सामने वाटर स्लाइडिंग दिखाई दे रही है। दो स्लाइडो का रंग नीला है दो का रेड है। बगल में छोटे-छोटे पेड़ लगे हुए इनके पीछे बड़ा पेड़ लगा हुआ है।